यह एक नदी बह रही है।

इसका पानी नीला सा दिख रहा है।

इलेक्ट्रिकल का यह गोदाम है।

बहुत सा पेड़ पूरा हरा भरा दिख रहा है।

इसमें कुछ महिलाएं अंदर जा रही हैं।

पोखरा पर पेड़ लगा हुआ है।